एक खेत से कोई मकई के बल तुड के रखा है उसके किनारे--

कोई मिर्ची तोर के लाया है खेत से रखा है बेचने के लिए लोग बीन के अपना पॉलिथीन मे भर रहे है।

चाय के साथ काफ़ी भी है। यानिकी चाय टेस्टी बनता होगा यहाँ तभ तो ग्राहक आ रहे हे और जा रहे हे आगे डस्टबिन रखा हुआ है। ठीक चल रहा है ये चाय का दुकान।

और मछली बेचने वाला न नए है न मछली खरीदने वाला है। क्या पता कोई छोड़कर भाग गया है की एैसे रखा हुआ है जो भी है सही है।